यह एक मोबाइल का शोरूम दिखाई दे रहा है जिसके चारो तरफ में कई सारे फोन दिखाई पड़ रहा --

यह एक मैदान में प्रैक्टिस करने की जगह है जहाँ पर कुछ आदमी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी के सामने कीपिंग में एक लड़की कीपिंग कर रही है।

इसके बाईं तरफ मे कुछ झाड़ियां दिखाई पड़ रही है और नीचे के तरफ के पत्ते को टुकड़े को सजाया गया है। और यह पहाड़ के ऊपर की तरफ राह जा रही है।

यह एक एडवेंचर करने की जगह प्रतीत हो रहा है जहां पर कुछ आदमी कुछ बंदे पहाड़ पे चढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे है।